केबिन में बहुत सारी दुकानें हैं बहुत सारी शॉप्स है बहुत सारी चेयर्स है चेयर का कलर ऑरेंज --

इस फोटो में मुझे ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग व्हाइट कलर की है येलो कलर की खिड़कियां हैं ब्राउन कलर की विंडोज --

एक फैन लगा हुआ है जिसका कलर सफेद है बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है बहुत सारी बिजली के वायर लगे --

बेड लगे हुए है बेड का कलर ब्लैक है व्हाइट बेड शीट है लाइट है फैन है ए_सी है।

मस्जिद का कलर सफेद है बहोत सारी चेयर्स लगी हुई है फैन लगे हुए फैन का कलर ब्राउन है।

जहां पर बहोत सारे लोग है चेयर्स है चेयर का कलर व्हाइट है और पिंक है।

एक बना हुआ है एक खंभा बना हुआ है जो की लोहे का है बहुत सारे तार लगे हुए हैं।

गाइड है बाइक है तार है और खिड़कियां हैं बहुत सारे लोग है।

एक झोपड़ी बनी हुई है जो की ऑरेंज कलर की है बहोत सारी कारे खड़ी है कार का कलर सफेद है।

इस फोटो में मुझे बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है मैदान का कलर ग्रीन है बहुत सारी घास है।

लोग है बहोत सारे पेड़ पौधे है चेयर्स लगी हुई है व्हाइट कलर की --

बहोत सारी चीजें बनी हुई हैं बहोत सारी रेलिंग्स लगी हुई है बहोत सारे समान बने हुए हैं रेलिंग्स लगी हुई हैं जो की ओरे --